ये भी काफी पुराने टाइम बनी हुई की जगह है या घर महल बोल सकते हैं हम इसको।

दो शटर है एक शटर पे चैनल गेट डला हो- लगा हुआ है।

हम्म रेस्टोरेंट का रिसेप्शन --

घास के पीछे बनी हुई बिल्डिंग है इधर टूटा सा एक घर बना हुआ है बड़े-बड़े पेड़ है यहाँं पर और ग्रीनरी ग्रीन एरिआ बहुत ही अच्छा है।